यह स्टेडियम में फुटबॉल मैच कराई जाती है। यह स्टेडियम में हर जगह लाईट्स लगाई गयी है। यहाँ बैठने की जगह बनाई गयी है।

बहुत ही अच्छा साउन्ड है। यहाँ पर फ्लोर और लाइट्स और डी.जे. लगाए गए हैं।

यह एक स्विमिंग पूल है। यह स्विमिंग पूल बोहोत बड़ा स्विमिंग पूल है।

यह जिम में लोग फैट कम करने के लिएमसलस टाइट करने के लिएसिक्स पैक बनाने के लिए आते हैं।

दौड़ने के काम आता है। यह रनर मशीन के ऊपर आदमी चढ़ कर इसमें रेस लगाता है।